ऊपर की तरफ टीन रखा हुआ है।

फूलों का रंग गुलाबी और सफेद है।

जिसके ऊपर सफेद और लाल रंग की लाइट नजर आ रही है।

इस दृश्य मे सामने की तरफ सफेद रंग की इमारत है।

उसका रंग सफेद और नीले रंग का है।

इस दृश्य में सामने बिल्डिंग की तरफ दो स्कूटी खड़ी हुई है।

और पीछे दीवार की तरफ बहोत सारे पिलर बने हुए हैं।

और एक इंसान सीढ़ियां चढ़ते हुए उप्पर की तरफ जा रहा है।

सामने की तरफ धारीयो पर खाना लगा हुआ है।